देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

यहाँ एक शोरूम वाला--

बहुत से बल्ब लाइटे और छते और बहुत से लोगो--